यह ट्यूटोरियल ब्लेंडर 259 में प्रोपर्टिज विंडो के बारे में है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
इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद हम यह सीखेंगे कि प्रोपर्टिज विंडो क्या है
प्रोपर्टिज विंडो में रेंडर पैनल क्या है प्रोपर्टिज विंडो के रेंडर पैनल में विभिन्न सेटिंग्स क्या हैं
मैं मानता हूँ कि आप ब्लेंडर इंटरफेस के बुनियादी तत्वों के बारे में जानते हैं
यदि नहीं तो कृपया हमारे पिछले ट्यूटोरियल बेसिक डिस्क्रिप्शन ओएफ थे ब्लेंडर इंटरफेस ब्लेंडर इंटरफेस का बुनियादी विवरण का अनुकरण करें
प्रोपर्टिज विंडो में विभिन्न पैनल्स हैं
यह हमारी स्क्रीन की दाहिनी ओर स्थित हैं
प्रोपर्टिज विंडो के शीर्ष पर आइकन्स की पंक्ति है
ये आइकन्स विभिन्न पैनल्स का प्रतिनिधित्व करते हैं जो प्रोपर्टिज सेक्शन के अंदर आते हैं
रेंडर सीन वर्ल्ड ऑब्जेक्ट आदि
इन पैनल्स में विभिन्न सेटिंग्स हैं जो ब्लेंडर में काम करते समय बहुत उपयोगी होती हैं
बेहतर देखने ओर समझने के लिए हमें अपने प्रोपर्टिज विंडो का पुनः आकार बदलना होगा
प्रोपर्टिज विंडो के बाएँ किनारे पर बायाँ क्लिक करें पकड़कर रखें और बाईं ओर ड्रैग करें
अब हम प्रोपर्टिज विंडो में ऑप्शन अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं
ब्लेंडर विंडोज का आकार कैसे बदलें यह सीखने के लिए हमारा ट्यूटोरियल देखें होव टो चंगे विंडो टाइप्स इन ब्लेंडर ब्लेंडर में विंडो टाइप्स कैसे बदलें
प्रोपर्टिज विंडो में रेंडर पहला पैनल है
डिफ़ॉल्ट रूप से जब भी हम ब्लेंडर खोलते हैं यह ब्लेंडर इंटरफ़ेस पर प्रदर्शित हो जाता है
इस पैनल की सेटिंग्स एनिमेशन के अंतिम आउटपुट तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं
इमेज का उपयोग सक्रिय कैमरा व्यू की एकल फ्रेम इमेज को रेंडर करने के लिए किया जाता है
इमेज पर बाया क्लिक करें
कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए फ़12 दबाएँ
सक्रिय कैमरा व्यू एकल फ्रेम इमेज़ के रूप में रेंडर किया गया है
3डी व्यू पर लौटने के लिए अपने कीबोर्ड पर ESC दबाएँ
एनिमेशन का उपयोग फ्रेम की एक पूरी श्रृंखला या एक इमेज़ क्रम रेंडर करने और एक मूवी फ़ाइल बनाने के लिए किया जाता है
डिफ़ॉल्ट रूप से फ्रेम रेंज टाइमलाइन पर 1 से 250 तक है
एनिमेशन पर बायाँ क्लिक करें
पूरी फ्रेम रेंज फ्रेम 1 टो फ्रेम 250 तक रेंडर हो रही है
रेंडर प्रोग्रेस को रोकने के लिए Esc दबाएँ
3डी व्यू पर लौटने के लिए Esc दबाएँ
रेंडर पैनल में डिस्प्ले पर जाएँ
डिस्प्ले हमें स्क्रीन पर रेंडर प्रोग्रेस कैसे देखें इसे चुनने में मदद करता है
डिफ़ॉल्ट रूप से डिस्प्ले इमेज एडिटर मोडे में है
मैं समझाता हूँ
सक्रिय कैमरा व्यू रेंडर करने के लिए फ़12 दबाएँ
रेंडर डिस्प्ले uvइमेज एडिटर के रूप में प्रदर्शित होता है
3डी व्यू uvइमेज एडिटर में बदलता है हम हमेशा सक्रिय कैमरा व्यू रेंडर करते हैं
uvइमेज एडिटर के बारे में जानने के लिए टाइप्स ओएफ विंडोज uvइमेज एडिटर विंडो के प्रकार यूवी इमेज एडिटर ट्यूटोरियल देखें
3डी व्यू पर वापस आने के लिए Esc दबाएँ
रेंडर पैनल में डिस्प्ले पर जाएँ
इमेज एडिटर पर बायाँ क्लिक करें
यह ड्रॉप डाउन मेन्यू रेंडर डिस्प्ले ऑप्शन्स की सूची दर्शाता है
फुल स्क्रीन चुनने के लिए बायाँ क्लिक करें
सक्रिय कैमरा व्यू रेंडर करने के लिए फ़12 दबाएँ
अब पूरी ब्लेंडर स्क्रीन uvइमेज एडिटर में बदलती है
पूर्ण स्क्रीन रेंडर मोड से बाहर आने के लिए Esc दबाएँ और ब्लेंडर कार्यक्षेत्र पर वापस जाएँ
रेंडर पैनल में डिस्प्ले पर जाएँ
फुल स्क्रीन पर बायाँ क्लिक करें
सूची से न्यू विंडो चुनें
सक्रिय कैमरा व्यू को रेंडर करने के लिए फ़12 दबाएँ
अब रेंडर डिस्प्ले ब्लेंडर कार्यक्षेत्र पर नए विंडो के रूप में प्रदर्शित होता है
आप इसे बहुत उपयोगी पायेंगे जब अपने एनिमेशन के प्रिव्यू को रेंडर करेंगे
इसे कैसे करें यह हम बाद के ट्यूटोरियल्स में देखेंगे
रेंडर डिस्प्ले विंडो बंद करें
रेंडर पैनल में डिस्प्ले पर जाएँ
न्यू विंडो पर बायाँ क्लिक करें
इमेज एडिटर मोडे चुनने के लिए बायाँ क्लिक करें
डिस्प्ले इमेज एडिटर मोड़ में है
अगली सेटिंग हम देखेंगे डाइमेंशंस
यहाँ हम हमारे अपेक्षित आउटपुट के आधार पर विभिन्न रेंडर प्रीसेट्स अनुकूलित कर सकते हैं
रेंडर प्रीसेट्स पर बायाँ क्लिक करें
एक ड्रॉप डाउन मेन्यू प्रदर्शित होता है
यहाँ सभी प्रमुख रेंडर प्रीसेट की एक सूची है
डीवीसीपीआरओ एचडीटीवी एनटीएससी पाल आदि
अभी के लिए हम इसे छोड़ देते हैं और रेंडर डायमेंशन की सेटिंग्स के लिए आगे बढ़ते हैं
रेज़लूशन रेंडर डिस्प्ले और सक्रिय कैमरा व्यू की चौड़ाई और ऊंचाई है
डिफ़ॉल्ट रूप से ब्लेंडर 259 में रेज़लूशन 1920एक्स1080 पिक्सल है
50 रेंडर रेज़लूशन का प्रतिशत माप है
इसका मतलब है कि केवल 50 वास्तविक रेज़लूशन रेंडर किया जाएगा
मैं समझाता हूँ
सक्रिय कैमरा व्यू रेंडर करने के लिए फ़12 दबाएँ
यह डिफ़ॉल्ट रेंडर रेज़लूशन है
यह केवल आधा या वास्तविक रेज़लूशन का 50 है
रेंडर डिस्प्ले विंडो बंद करें
रेंडर पैनल में बायाँ क्लिक करें और रेज़लूशन के नीचे 50 पकडकर रखें और दाईँ ओर ड्रैग करें
प्रतिशत 100 में बदलता है
प्रतिशत बदलने के लिए अन्य तरीका है 100 पर बायाँ क्लिक करें
अब कीबोर्ड पर 100 टाइप करें और एन्टर दबाएँ
सक्रिय कैमरा व्यू रेंडर करने के लिए फ़12 दबाएँ
यहाँ 1920 एक्स 1080 पिक्सल का पूर्ण 100 रेज़लूशन रेंडर है
रेंडर डिस्प्ले विंडो बंद करें
अब मैं रेज़लूशन को 720 एक्स 576 पिक्सल में बदलना चाहता हूँ
1920 पर बायाँ क्लिक करें
अपने कीबोर्ड पर 720 टाइप करें और और एन्टर दबाएँ
फिरसे 1080 पर बायाँ क्लिक करें
अपने कीबोर्ड पर 576 टाइप करें और एन्टर दबाएँ
सक्रिय कैमरा व्यू रेंडर करने के लिए फ़12 दबाएँ यहाँ 720 एक्स 576 पिक्सल का पूर्ण 100 रेज़लूशन रेंडर है
रेंडर डिस्प्ले विंडो बंद करें
रेंडर पैनल में डायमेशन्स के नीचे फ्रेम रंगे पर जाएँ
फ्रेम रंगे आपकी फिल्म के लिए रेंडर करने योग्य एनिमेशन लंबाई निर्धारित करता है
जैसा कि मैंने पहले कहा डिफ़ॉल्ट रूप से फ्रेम रेंज 1 से 250 है
स्टार्ट 1 पर बायाँ क्लिक करें
अपने कीबोर्ड पर 0 टाइप करें और एन्टर दबाएँ
यह हमारी एनिमेशन लंबाई की शुरूवाती फ्रेम या पहली फ्रेम है
इंड 250पर बायाँ क्लिक करें
अपने कीबोर्ड पर 100 टाइप करें और एन्टर दबाएँ
यह हमारे एनिमेशन लंबाई की समाप्त होने वाली या आखिरी फ्रेम है
तो अब हमारे पास अपने एनिमेशन के लिए एक नयी फ्रेम रेंज है
3 डी व्यू के नीचे टाइमलाइन पर जाएँ
ध्यान दें कि टाइमलाइन डिस्प्ले अब कैसे बदलता है क्योंकि हमने रेंडर पैनल में फ्रेम रेंज बदली है
टाइमलाइन विंडो के बारे में जानने के लिए टाइप्स ओएफ विंडोज टाइमलाइन ट्यूटोरियल देखें
रेंडर पैनल में डायमेंशन्स के नीचे एस्पेक्ट रेशियो पर जाएँ
ध्यान दें कि जब हमने रेज़ूलेशन बदला एस्पेक्ट रेशियो भी बदला है
फ्रेम रेट हमारी फिल्म में एक सैकंड में ऐनिमेटिंग करने के लिए फ्रेम की संख्या निर्धारित करता है
डिफ़ॉल्ट रूप से यह 24 एफपीएस या फ्रेम्स प्रति सैकंड है
24 एफपीएस पर बायाँ क्लिक करें
एक ड्रॉप डाउन मेन्यू प्रदर्शित होता है
यहाँ सभी प्रमुख फ्रेम रेट्स की सूची है जिनका उपयोग एनिमेशन फिल्म बनाते समय किया जाता है
आप अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी एक को चुन सकते हैं
एफपीएस 24 पर बायाँ क्लिक करें
अपने कीबोर्ड पर 15 टाइप करें और एन्टर दबाएँ
तो अब हमारा फ्रेम रेट 15 फ्रेम्स प्रति सैकंड में बदल गया है
अगला है आउटपुट
क्या आप बाईं ओर टीएमपी लिखा हुआ यह क्षैतिज बार और दाईँ ओर फाइल ब्राउजर आइकन देख रहे हैं
यहाँ हम हमारी रेंडर फ़ाइलों के लिए आउटपुट फ़ोल्डर निर्दिष्ट कर सकते हैं
फाइल ब्राउजर आइकन पर बायाँ क्लिक करें
फ़ाइल ब्राउज़र के बारे में जानने के लिए टाइप्स ओएफ विंडोज फाइल ब्राउजर एंड इन्फो पनेल ट्यूटोरियल देखें
अपना आउटपुट फोल्डर चुनें
मैं माय डॉक्यूमेंट्स चुन रहा हूँ
क्रिएट न्यू डायरेक्ट्री पर बायाँ क्लिक करें
आउटपुट टाइप करें और एन्टर दबाएँ
फोल्डर खोलने के लिए आउटपुट पर बायाँ क्लिक करें
एक्सेप्ट पर बायाँ क्लिक करें
अब हमारी सभी रेंडर फ़ाइल्स माय डॉक्यूमेंट्स के आउटपुट फ़ोल्डर में सेव हो जाएँगी
आउटपुट फ़ोल्डर बार के नीचे इमेज फोरमैट मेन्यू है
यहाँ हम हमारी रेंडर इमेज़ेस और मूवी फ़ाइल्स के लिए अपना आउटपुट फोर्मैट चुन सकते हैं
यहाँ ब्लेंडर को समर्थित करने वाले सभी फॉर्मैट्स की सूची है
हमारे पास इमेज फॉर्मेट्स और मूवी फॉर्मेट हैं
हम हमारी आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी एक को चुन सकते हैं
पंग के नीचे तीन कलर मोड्स हैं जिसका ब्लेंडर में उपयोग किया गया हैं
बीडबू ग्रेस्केल मोड है
आरजीबी डिफ़ॉल्ट रूप से चुनित है
आरजीबी कलर मोड है जो आरजीबी डेटा के साथ रेंडर फ़ाइल्स को सेव करता है
आरजीबीए अतिरिक्त डेटा के साथ रेंडर फ़ाइल्स सेव करता है जिसे अल्फा चैनल कहते हैं
यह सिर्फ़ कुछ इमेज़ फोर्मैट के साथ ही काम करता है जो अल्फा चैनल रेंडरिंग में समर्थन करता है
अतः यह रेंडर पैनल के बारे में था
तो इस ट्यूटोरियल में हमने प्रोपर्टिज विंडो में रेंडर पैनल को सीखा है
बाकी पैनल्स को अगले ट्यूटोरियल में सीखेंगे
अब आगे बढ़ें और एक नयी ब्लेंडर फ़ाइल बनाएँ
रेंडर डिस्प्ले को न्यू विंडो में बदलें
रेज़लूशन 720 एक्स576 100 में बदलें
फ्रेम रेंज 0 से 100 में बदलें
फ्रेम रेट 15 एफपीएस में बदलें
रेंडर फाइल्स के लिए एक आउटपुट फ़ोल्डर बनाएँ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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद